यहाँ पर मुझे शोरूम मॉल खुला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे एक इंसान का पुतला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

यहाँ पे मुझे ऑल शॉपिंग दिखाई दे रही हैं जिसमे बहुत सारे लेडीज कपड़े टंगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा मदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहा उसमे बहुत सारी डिजाइनिग लगी दिखाई दे रही है कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पे--